यह बैंक की एक मिनी ब्रांच है जहां से लोगों को लोन दिया जाता है बाहर एक टेंपू खड़ा हुआ है इससे इधर एक स्कूटी खड़ी है।

एक आदमी उधर खड़ा खड़ा मुंह फाड़ रहा है इधर एक पल्सर गाड़ी खड़ी है बीच में एक लोहे की रेलिंग लगी हुई है नीचे सड़क है।

यह एक आश्रम है इसका नाम आनंद आश्रम रखा गया है इसके बाहर बहोत ही अच्छा ब्यूटीफुल दरवाजा लगाया है।

यहां बहुत अच्छा व्यू है इसके पास एक तालाब है इधर मोटा गेंडा आदमी है खड़ा हुआ है यह देख रहा है इस तालाब को ऊपर रूमाली बंद रखा है।

ट्रेन आई हुई है प्लेटफार्म पे ट्रेन यहां से अलग अलग गांव की ट्रेनें जाती हैं बीकानेर की भी ट्रेन आती है यहां पे --

यह एक फैंसी कपड़ों की दुकान है जहां मंगलम फैंसी के नाम से लिखा हुआ है एक बाबूजी प्लाजा सादुल स्कूल के सामने --

यहां फल देते हैं पुष्प लेते हैं कुछ अशोक के बहुत बड़े पेड़ पड़े हैं कुछ छोटे पौधे रखे हुए हैं यह नर्सरी बहुत अच्छी है बहुत अच्छा काम करते हैं बहुत अच्छा --

ये एक किलकार खाना है यहां पे लोग दियाड़ी पे काम कर रहे हैं कुछ बोरों में सामान को रखा जा रहा है कुछ को --

नीचे का फर्श बहोत अच्छा है और ऊपर की छत भी बहोत अच्छी है।

और वॉशिंग वर्क सर्विस की रेट लिखी हुई है इनके ऊपर--

ये एक अच्छा मैदान है जहां पे घास-फूस लगी हुई हैं जहां पे पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं एक घर है जहां पे ऊपर गार्डन के अंदर पेड़-पौधे लगे हुए हैं नीचे घास है।